यहाँ पर हमें ईसा मसीह की बहुत सारी तस्वीरे दिखाई दे रही है ऊपर पर हम देखें तो यहाँ पर साथ सजावट भी की गई है।

इन्होंने लोगों के ऊपर टॉवल भी रखा है हमें आसपास देखें तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखाई दे रही हैं।

साथ ही हम यहाँ एक आदमी को कुछ खरीदता हुआ भी देख पा रहे है बाहर पर हमें ठण्डे के बोटल भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

एक रास्ते का दृश्य है जहाँ पर हमें चलती-फिरती कई सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर एक ऑटो भी देखने को मिल रहा है।

हमें दीवार पर टंगा एक कैलेंडर भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमारे को दो ठो चेयर दिख रहा है जो चेयर दिख रहा है वो थोड़ा फटा हुआ है।

हमें बाइबल भी देखने को मिल रहा है देखने में ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह इन सबको कुछ बता रहे हैं।

एक ए_टी_एम का है जहाँ हमें बाहर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।